और इस तस्वीर को एक पहाड़ से लिया गया है इस तस्वीर को एक फोन से लिया गया है।

ये तस्वीर एक विद्यालय कि है जो की बिहार मे स्थित है। कुछ छात्राएं हैं मैदान में खेल रहें हैं।